खजूर के दो बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

सामने बहोत ही सुंदर पार्क दिख रहा है पार्क के पास एक--